यहाँ पे एक पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है और अ पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ो का काफी सारे ग्रीन दिखाई दे रहे है। नीचे ज़मीन दिखाई दे रहा है। आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक काफी बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है जिसमे दो बतख भी है बतख तालाब के अंदर है और दो बतख दिखाई दे रहे है जो की ब्लैक दिखाई दे रही है।

और इसमें पानी भी बोहोत सारा दिखाई दे रहा है पानी पूरा ब्लैक सा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है काफी बड़ा ये जो तालाव है और पूरा ब्लैक ब्लैक सा यहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है धुंधला-धुंधला सा।

और एक मैडम यहाँ पे खड़ी हुई है जिसको साड़ी पहनी हुई है और फैन वगैर लगा हुआ है और ये एक स्कूल जैसा बना हुआ है जिसके अंदर ये महिला है जो खड़ी हुई है ।

और ये मतलब ऊपर की साइड देख रहा है।

यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये बिल्डिंग दो कलर की यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये पूरा मौसम जो है नीला-नीला सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और--

यहाँ पे एक छोटा सा लड़का दिखाई दे रहा है जिसको पिंक कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है ये पेड़ो मे पानी डाल रहा है आगे एक घर है व्हाइट कलर का जिसके आगे बगीचा जैसा बना हुआ है ।

और गेट भी है इसका जो गेट है वो ऐसा लग रहा है लगा हुआ है और --

यहाँ पे एक काफी बड़ा जंगल जैसा दिख रहा है जिसमे काफी सारे जो गाय-भैस है चर रहे है।

यहाँ पे एक काफी बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमे तीन चार ऑटो वगैरा भी है कार भी है यहाँ पे और राइट साइड बोउ एक घर भी बना हुआ है जो घर घर है।

यहाँ पे काफी सारा हरा-भरा अ बगीचा जैसा मतलब दिखाई दे रहा है एक काफी हरा-भरा है यहाँ पे बहोत सारे पेड़ है।

यहाँ पे एक अअ शॉप जैसी दिखाई दे रही है जिसमें साइकिलो की ये दुकान है जिसमे काफी सारे साइकिले रखी हुई है एक अंकल जो हैं जिनको ब्लैक टी-शर्ट पहनी हुई है।

यहाँ पे एक सोफ जैसे दिखाई दे रही है बोच की इनकी यहाँ पे काफी सारी बोच रखी हुई है | एक लड़का है जिसके हाथ में बोच रखी हुई है और ये एक चदर सेट जैसा बना हुआ है।

जिसमें शॉप जैसी है जिसमे बोझ ही बोझ रखे हुए है अलग-अलग कलर की जिसमे से ये बोझ है ये रखी हुई है।